खेत है जिसमें नारियल का पेड़ लगा हुआ है। ये पीपल का कुछ छत छत खपड़ा का घर भी है लगा हुआ है कि अंदर कोई आदमी बाहर से अंदर कोई आदमी न जा सके सुरक्षा के लिए लगाया हुआ है। नारियल का पेड़ है फिर एक अच्छा रूम है।

ये ऊपर से अथी लगा हुआ है रोट लगा हुआ है। निचे नहीं भी जा सकते हैं ऊपर से भी जा सकते हैं। बहुत अच्छी ही सजावट है बहुत अच्छा लग रहा है देखने में।

शोरूम है ऑटो लगा हुआ है यहाँ ऑटो आदमी खरीदने जाते हैं लाल रंग का ऑटो है पीला बोर्ड लगा हुआ है उजला भी बोर्ड लगा हुआ दोगो पीछे चक्का लगा हुआ है एगो आगे चक्का लगा हुआ है।